चूल्हा है। चूल्हे के ऊपर जो है कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में सब्जी है। झाज डली हुई है। नीचे कढाई है झाज है डिब्बा है।

जो है बच्चे हैं। सैंटा क्लौज है। सैंटा क्लौस ने रेड कलर की शर्ट पहना है।